यह मुजफ्फरपुर का सीन है यहाँ पे म्युनिसिपल ऑफिस है ऑफिस है यहाँ पर ऑफिशियल वर्क होते हैं और यहाँ पर सब किसी तरह के एक प्रोग्राम होने वाला है।

यहाँ एक प्लेग्राउंड यहाँ पे फील्ड है। एक मैदान है गार्डन है। जिसमें हर तरह का फूल पौधे छोटे बड़े पौधे को अ ल लगाया गए है।

उनके उनको खेलने के लिए हर एक तरह का सामान्य से उपस्थित रखे गए हैं यहाँ पे अ-अ तोते हैं मिट्ठू है पैरोट है।

यहाँ एक मंदिर है मंदिर के आगे अ अम्म हर अ फ्लावर्स हैं मालाएँ फ्लावर्स के बने माला हैं जिस माला ये का प्रयोग हम शादी-ब्याह --

यहाँ एक अपार्टमेंट एक बड़ा सा अपार्टमेंट है अपार्टमेंट में अअ अम्म हम लोग अपने अपने कार्स को यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर हरेक अपार्टमेंट्स के लोग रहने रहते है लोग अपने-अपने --

जो दुकान शॉपकीपर है वो सारे समांस को सेल करते है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी है फ्रिज भी है।

मतलब हर एक चीज को सेपरेट रखा गया है सेफ्टी से भी रखा गया है और प्लस में कुछ --

वह अपने-अपने स्थान लिए हुए हैं यहाँ अगल-बगल अम महात्मा बुद्ध के फोटो के आ अ के आस-पास बहोत से पिलर हैं।

पिलर का आकर्षण आकर्षित करने वाला जो सामग्री ले वो बहुत ही आकर्षक --

वी इस तस्वीर में बड़े-छोटे सभी लोग आपस में मिलजुल कर फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं ये लोग फेस्टिवल में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए किसी स्थान को --

यह एक कॉलेज है एक यूनिवर्सिटी है जिसका एक बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत कैंपस दिए हुए हैं कैंपस में हर एक काम उम्म कैंपस में हर एक तरह का लम्बा --

रिवर्स है नदी है साथ में ट्रीज है बड़े-बड़े काफी अच्छा दृश्य है देखने में आकर्ष --

अ यहाँ पर जिले स्तरीय पर यहाँ पर अपना वैसे ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं यहाँ पर अपना कार्यक्रम को शुरूआत किया जा रहा है।

अपना प्रोग्रेसेड दिखला रहे वे एक अलग-अलग प्रकार के कार्टून्स है अलग-अलग प्रकार के आर्ट्स कर रहे हैं कला कर रहे हैं।

अ स्टाइल अअअ लुक काफी अच्छा है। मॉडर्न लुक दे रहा है अअअ और बार्बर भी यहाँ --

अ फोटो के लिए फोटो शूट्स के लिए फिल्मशूट्स के लिए अच्छे हैं उम्म शॉर्टस वीडियोज भी अच्छी बन सकते हैं।

जो कि क्रिश्चियन लेडीज है अपने-अपने सर्टिफिकेट्स लिए लेकर अपने मैरेज के लिए सेरेमनी के लिए।

वह पहाड़ी के बग अ के के कॉर्नर से एक अ रोड़ भी तो है और जा रहे हैं। जो की रोज यहाँ पे बस है गाड़ी है बड़ी-बड़ी गाड़ियां--

बड़े-बड़े पेड़ हैं जैसे की आम्स का आम का पेड़ छोटे-बड़े पेड़ हैं आम के।

यहाँ पुरुष स्त्री सब कोई मिलकर भंडारा कर रहें हैं भगवान का अर्ज़ी लगा रहें हैं लोग।

हम्म हम्म कंबल टॉवल सब कुछ है।

अ लोहा स्टील का एकदम फैक्ट्री है इ सारे कचरे हैं उम्म स्टीलस का।

यह गांव है। यह गांव है। गांव की सड़क हैं कच्ची सड़के हैं। यहाँ से अअ सड़क के किनारे--

अ आम के बगीचे भी है पेड़ भी है। बाउंड्री भी घर भी है। यहाँ लोग रहते भी है। खेल कूदते भी हैं बच्चे अच्छे लग रहे हैं।

यहाँ कपड़े बुनना है यह कपड़े बुन कर हुआ काम चल रहा है यहाँ लोग कपड़े बुन रहे हैं।

नाइट कैम्प्स का भी --

ये एक अ डिजिटल अ शॉप्स है माल्स है व ए.टी.एम. है फिर से अअ यहां लोग अपने-अपने डिजिटल वर्किंग के लिए भी आते हैं।

और प्लस में लोग अपने-अपने बाइक्स है ये सब वहां पार्किंग में भी लगाए हुए है।

यहाँ अम्म कंक्रीट का काम चल रहा है और यहाँ पे लेबर्स मिस्त्री अपने-अपने लगे हुए हैं काम कर रहे हैं।

करने का काम करता है जस्ट लाइक मून एंड सन हश मून का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है सन से आकर्षित करता है वो--

हमारा इंडिया हमारा भी हमारा देश बहोत ही आगे विकाश कर चुका है।